ये एक दुकान है इस दुकान में बच्चों के टिफिन कापी किताबें--

यहां एक शादी फंक्शन है यहां बहोत अच्छी सजावट हुई हुई है।

और एक लोहे का खम्बा खड़ा हुआ है।

और बोर्ड का कलर लाल है इस बोर्ड पर अलि बेके लिखा हुआ है।

मना रहे हैं और एक लड़की के हाथ में तिरंगा है और दो लड़के एक लड़के को ऊपर उठा रखा है।

ये एक कॉलेज है इसमें बच्चे फंक्शन कर रहे हैं और कुछ बच्चे खड़े हुए देख रहे हैं।

और छत में लाइट लगी हुई सफेद कलर की लाइट लगी हुई है।

ये यहाँ कार पार्किंग है इसका गेट लोहे की ग्रिल से बना हुआ है।

कपड़े का कलर अलग अलग कलर के कपड़े हैं।

इस कंपनी का गेट लोहे की ग्रील से बना हुआ है।

यहां एक तालाब है। तालाब के पास एक बड़ी नाव है और तीन चार छोटी नाव है।

ये एक होटल है इस पर दो आदमी खाना खा रहे हैं।

और गेट के सामने खंभा खड़ा है और दो दरखत खड़े है।

अस्पताल के बाहर बहुत से आदमी खड़े हैं अस्पताल में सीसे का गेट लगा हुआ है।

इस के में लोहे की ग्रिल के गेट हैं।

ये एक स्कूल है इस स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज हैं यह कमेला रोड सहारनपुर है।

ये एक पेट्रोल पंप है इसका नाम ईसार है इसके पास बहुत सा घास खड़ा हुआ है।

इसकी दीवार पर लाल कलर का पेंट हुआ हुआ है और दो बड़ी लाइट लगी हुई है।

इस शोरूम में बहोत से कपड़े मिलते हैं।

सामने दीवार पर एल_सी_डी लगी हुई है उसमें एक बच्चे की तस्वीर बच्चों की तस्वीर है।

कंटे की सामने दीवार पर सफेद कलर का पेंट हुआ हुआ है।

ये एक दुकान है इस दुकान में कुर्सियां रखी हुई है।